और कुछ को बारीके से सेट किया गया है जो देखने में बहोत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक दुकान की है जहां दो-तीन कम्प्यूटर्स रखे हुए हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक लड़का काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

और नीचे ढ़ेर सारे इस बिल्डिंग्स के नीचे ढ़ेर सारे शटर्स हैं जिन में दुकान खुली हुई हैं सारे शटर अभी फिलहाल बंद हैं।

यह फोटो स्टेज की है जहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

उसके पीछे पिलर जाती हुई दिखाई दे रही है और ढ़ेर सारे बोरे ओरे रखे हुए हैं जिसमें सब काम करने वाले उपकरण हैं।